इधर बड़ा -सा पोस्टर लगा है अच्छा दिख रहा है पीला कलर में घर पुताया है अह दरवाज़ा है खिड़की हैं।

और ये किसी का पैर है ब्लैक कलर में टेबल है और अच्छा दिख रहा है।

और उसमें पानी भी है एक घास है और पानी भी है हरा-भरा अच्छा दिख रहा है।

छुए जाव अच्छा दिखत हे अउ नीचे म छोटा छोटे-छोटे पथरा हावे हे मोर ह मोर ह अ उम्म संतरा नि --